इस पिक के माध्यम से हम यह देख सकते हैं की एक बहुत हरी-भरी बिल्डिंग नजर आ रही है जिससे की बीचो-बीच तार भी पास कर रहे है और बगल में एक पगडंडी भी बनी हुई है जिसके दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ दिख रहे हैं।

और नीचे में इसकी उ भूरे रंग की बेस है जिसपे ये घोड़ा रखा है। उस पे आदमी बैठा हुआ है और चारो तरफ हरियाली भी देख सकते हैं और एक दो अलग-अलग बिल्डिंग्स भी देख सक --